बहुत से घर भी दिख रहे हैं और यहाँ पेड़ भी--

बहुत सी गिटारे रखी हुई है।

यहाँ पर मुझे--

श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर भी दिख रही--

और यहां पर आम रखे हुए हैं और केले भी है।

पीछे बहुत सी बिल्डिंग्स दिख रही है।

हम्म इनका कलर सफेद और ऑरेंज है।

और यहां पर कुर्सियां भी रखी है।

बहोत से लोग भी दिख रहे हैं।

और यहाँ एक मंच भी है।

और पर यहां पर दो सफेद कलर की गाड़ियां भी लगी है।

एक पोस्टर दिख रहा है जिसमें विजय पुस्तक भंडार लिखा है।

यहां पर कुछ लोग भी हैं।

अच्छी-अच्छी लाइट्स भी--

यहाँ पर मुझे एक टाइल्स वाला--

लेंटल दिख रहा है।